यह दृश्य एक पहाड़ी इलाके की लग रही है बहुत ही छोटे छोटे पहाड़ है और बहुत ही शांति यहा पे दिख रही है।